है एक वाइट रंग की कार है जिसमें रेड कलर के फूल और पिंक कलर के फूल और कुछ येलो कलर के --

घर भी दिखाई दे रहा है जोकि टीनों से बना हुआ है और यहाँ पर --

यहां पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां अपनी फोटो खिंचवा रहीं हैं।

यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है और एक रेड कलर की मोटर साइकिल है जहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है और यहाँ पर --

कुछ लोग कुछ दूरी पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बादल वाइट रंग के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर --

है एक मूर्ति है जो की मिट्टी --

और यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बने हुए जिनप --

यहां पर इटों का ढेर लगा हुआ है और बड़े-बड़े पेड़ --

आइ हुए है जिस पर कारे चलती हैं और उसके बगलों पे --